यहाँ पर एक घर है इस घर के पास में दो दुकाने है इन दुकानों पर बड़े-बड़े बैनर लगे हुए है इन दुकानों के पास में भी बड़े-बड़े बैनर है यहाँ--

बैंक है इस बैंक का रंग नीला है यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े बैनर लगे हुए है यहाँ पर दो गाड़ियां खड़ी हुई है एक जीप खड़ी हुई है यहाँ पर एक खंभा लगा हुआ है।

ये एक मार्केट है इस मार्केट में बहोत सारी दुकाने है यहाँ पर बहुत सारी गाड़िया खड़ी हुई है यहाँ पर एक कनक बेंगल्स है यहाँ पर एक--

यहाँ पर एक बहुत बड़ा टावर दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक गेट है यहाँ पर बहोत सारे बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगे हुए है।

यहाँ पर बहुत सारी जीप रखी हुई है इनमें से एक जीप काले रंग की है ये जीप थार हैं।

यहाँ पर एक हाईवे है इस हाईवे के किनारे एक सफ़ेद रंग की जीप खड़ी हुई है इसके दोनों गेट खुले हुए है यहाँ पर तीन लोग खड़े हुए है।